कई सारे लाइटियां लगीं हैं और लाइट लगी हुई हैं।

हम्म डॉक्टर है पास में पेशेंट लेटा हुआ है ठीक कर रहा है।

कुछ मूर्तियां दिखाई है कुछ ग्रुप में खड़े हैं | कुछ ग्रुप में जा रहे हैं फ़ोटो खिंचा रह --

और ये इकट्ठा हैं वहाँ पे देव द्रश्य देख रहे हैं। एक --

कटिंग करा रहे हैं थोड़ा दिख रहे हैं बाइक खड़ी हुई है थोड़ा दिख रही है --

बस स्टेशन है। वहां पे एक है जो कानों में डाले हुए है जो बस में चढ़ रहा है। हाथ में बैग लिए हुए है।

होटल गेट अवे कर्नाटका । यहां पे ऊं ऊपर की ओर दो व्यक्ति जा रहे हैं। सीढ़ियां हैं।

कचड़ा पड़ा हुआ है। पानी झरने की तरह ऊपर पहाड़ से गिर रहा है।

और अपने आप को शरीर को फिट करने के लिए एक ही पोजीशन में है। लगभ --

दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति पाइप लिए हुए खड़ा हैं और एक व्यक्ति ग्लव्स पहने हुए टोपी लगाए हुए हैं और दोनों ही छड़ पकड़े हुए हैं जो पिलर भर रहे हैं। टंकी नीचे रखी। टंकी मे खड़े दिख रहे है।